एक बड़ा सा गार्डन जो है जो कत्थई रंग की है। और बहुत सारी खिड़की बनी हुई है ।

सामने बहुत सारी कुर्सी रखी हुई है जो काले कलर की है भूरे कलर का टेबल रखा हुआ है और एक पंखा लटका हुआ है जो ब्लैक कलर का है।

बड़ा सा बिल्डिंग है जो सफ़ेद रंग का है। बहुत सारी खिड़की लगी हुई है जिसपे कांच लगा हुआ है।

एक बड़ा सा मंदिर है जो सफेद रंग का है। मंदिर के उपर दो गुंबज बना हुआ है। उपर के साइड में दो शेर बने हुए हैं दो हिरण बनी हुयी है उपर एक झन्डा लगा हुआ है ।

सामने एक ए_टी_एम का दुकान है। सामने एक दो एक गाडी पे दो लोग बैठे हुए हैं कही जा रहे हैं । सामने एक साइकिल भी खड़ी हुई है। एक कार है जो सफेद रंग की है । सामने जो बिल्डिंग का रंग है वो भूरा है।

सामने एक लड़की का चित्र बना हुआ है दुल्हन का और बाहर बहुत सारी लाइट लगाई गयी हैं। जो उपर के साइड पे चार लाइट लगी गयी हैं और नीचे के साइड पे चार लाइट है।

ने तीन दुकान है जो कुछ लोग खड़े हुये है। एक गाड़ी रखी हुई है एक साइकल रखा हुआ है। सामने बोहत पोस्टर लगाए गए हैं ।

कुछ लोग खड़े हुए हैं और सामने फूल से बोहुत डेकोरेट किया गया है और सामने एक व्हाइट कलर की लाइट जल रही है।

सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। कुछ औरत खड़ी हुई है। कुछ आदमी खड़े हैं। और उस सामने के साइड पे एक बिल्डिंग है जिसमें तीन चोंगे लगी हुई है।